यह एक बैंक है जिसमें चैनल लगा हुआ है और इसके ऊपर एक तस्वीर है। सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जिसके --